इसका डिजाइन बोहोत ही अच्छा है।

और वो देखने में बोहोत ही सुंदर लग रहा --

मौसम ऐसे बना हुआ है कि जैसे शाम का टाइम हो। दो ब्रिज दिख रहे हैं एक लोखन और एक सिमेन्ट और श्श लोखन से बना हुआ है।

दुकान का मालिक अंदर खड़ा है।

शहर के किनारे एक नदी दिखाई दे रही है।

नदी के इस साइड रोड हैं।